हमें यहाँ पर एक बोहोत बड़ा रोड दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर बोहोत सारे ढोलक दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर एक पीला झण्डा दिखाई दे रहा है।

हमें यहाँ पर बोहोत बड़ा शहर दिखाई दे रहा है | हमें यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं | एक हमे मकान दिखाई दे रहा जो सफ़ेद कलर का है ।

हमें यहां पर ट्राली दिखाई दे रही है | हमें यहाँ पर बहोत बड़े-बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑरेंज कलर के हैं | हमें यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं ।

हमे यहाँ पर खम्भे दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर बहुत सारे नीले आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है ग्राउंड दिखाई दे रहा है हमे यहाँ अर बहत से दरवाजे दिखाई दे रहे है।

हमें यहाँ पर बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर छत दिखाई दे रही है। फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। पेंड़ - पौधे दिखाई दे रहे हैं।

का कलर है वो ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिख रही है। सीढ़ियाँ दिख रही हैं। गिट्टियां दिख रही हैं। सीमेंट की बोरियां दिख रही हैं। तार दिख रहे हैं। बाइक दिख रही है और रोड दिख रहा है।

हमें यहाँ पर एक कमरा दिख रहा है। बहुत सारे पोस्टर्स दिख रहे है। बहुत सारी मशीन्स दिख रही है। हमे यहाँ पर लोग भी दिख रहे है। हमे यहा पर एक्सरसाइज करते लोग दिख रहे है। सीट दिख रही है। हमे जो की --

हमें यहाँं पर एक रूम दिखाई दे रहा है जो कि पीले कलर का है। नीले कलर की दिवाले हैं। हमें यहाँं पे बोर्ड दिखाई दे रहा है। व्हाइट कलर का एक मोती दिखाई दे रही है। फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है। फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।